यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर पिंक है और एक झोपड़ी भी बनी हुई दिखाई दे --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

और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

की तार भी दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है |

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है इसकी दिवाल का कलर व्हाइट है यहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ बाइक --

टेबल और बेंचें रखी हुई है जिसके ऊपर कुछ कॉफी वगैरा रखे हुए दिखाई दे रहें हैं यहाँ पे एक --

और बिजली की तार भी दिखाई दे रही है यहां पे कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

में बिजली की तार भी दिखाई दे रही यहां पे खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही --

बहुत सारी सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और ये भोलेनाथ का त्रिशूल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पे --

एक आईना भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और चेयर भी रखी हुई है यहाँ पे कुछ लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही --

यहां पर चेयर भी रख हुई है कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे --

कुछ मछलियाँ के रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग खड़े हुऐ भी दिखाई दे रहे हैं।

और शटर भी लगी हुई यहां पे बहोत सारी सीढ़ीयां भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ मुँह तर चट्टान लगी हुई है यहाँ पे एक गुफा में व्यक्ति घुसता हुआ दिखाई दे रहा है।

लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है और फैन भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।